यह एक एस_आर जेंट्स पार्लर है यहां पर बॉयज के लिए हेयरकट और कई सुविधाएं उपलब्ध होती है।

इस पार्लर का बोर्ड बहोत सुंदर है इसमें लाइटनिंग की गई है तथा बोर्ड के ऊपर एक डिश लगाई गई है।

उनकी चेकिंग की जा रही है यहां पास में बहोत ज्यादा सामान रखा गया है।

यह फोटो प्राकृतिक दृश्य तथा प्राचीन--

जो अभी बंद हो रखा है हमें यहां पर उनके चाय का मेनू भी लगा हुआ है पास ही में रेल दिख रही है जो शायद चल रही है।

यह फोटो किसी स्कूल के बाहर की फोटो है या फिर कॉलेज के बाहर की फोटो है।

यहां बहुत खूबसूरत तरीके से दर्शाया गया है यहां एक प्लेन है तथा एक सोल्जर का --

यहां एक फैन लगाया हुआ है तथा फैन के नीचे एक लेडी का बोर्ड गेट भी बना हुआ है।

यहां पर बहोत ही अलग प्रकार के मोबाइल्स रखे जाते हैं यहां पर आपको फाइवजी फोरजी व अन्य कई प्रकार के फोन मिल सकते हैं।

यहां स्टेज पर कई बच्चे बैठे हुए हैं जिन्होंने--

आगे एक रेड कारपेट बिछा हुआ है तथा स्टेज पे एक बहोत बड़ा सोफा है जिसपे लाइटनिंग अच्छी की गई है वो बहोत ज्यादा खूबसूरत लग रहा है।

फ्लावर वास और अन्य कई चीजें बनाई जाती हैं यहां पर दो टोकरियां तथा दो फ्लावर वास बनाए गए हैं तथा एक अन्य चीज भी बनाई गई है।

एयरप्लेन के पास के फोटो है जहां यात्री एरोप्लेन में सवार होने जा रहे हैं तथा यहां पर बहुत ज्यादा खुली जगह है।

बहोत सारे मैट और कई अन्य प्रकार के सामान भी बनाए जाते हैं।

यह फोटो एक कैफे की फोटो है जहां बहोत सारी वेज सैंडविच रखी गई है पास ही में एक जूस का ग्लास है जिसमें स्ट्रा है।